यहाँ पे काफी सारे आदमी हैं जोकि देखने आये हैं और यह लगभग शाम का टाइम हो चूका है जोकि अँधेरा दिख रहा है और यह काफी खूबसूरत ये नजारा पानी बहुत ही गहरा --

यहाँ पर एक मुस्लिम है जो अपने लाइन के द्वारा इस मशीन से अपना काम कर रहे हैं यह --

मजदूर अपनी बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से इस घर मे काम करते नजर आ रहे है और यह रूम की बना रहे हैं।

सजावट भी बहुत सही तरीके से की गई है और काफी रंगों की बैलून भी लगाई गई है।

घर नजर आ रहे हैं ए एक औरत है जो उस रोड पे खड़ी है यह देखने में --